एक दुकान चाय की दुकान व एक--

पास में ही बिल्डिंग है यह दिन के समय का फोटो है।

यह फोटो किसी बड़े टेंपल का है जो काफी बड़ा है तथा यहां--

जिसमे एक बड़े से बाउल में काफी मछलियाँ रखी हुई हैं।

एक फोटो में मौसम भी काफी साफ नजर आ रहा है।

यह फोटो एक फल की दुकान--

इस फोटो मे एक बड़ा सा पहाड़ प्रतीत हो रहा है जिस पर काफी--

हरे भरे व विशाल पेड़ पौधे हैं।

तथा यह इस फोटो में लाइटों द्वारा--

काफी वहीकल खड़े हुए हैं रा जिनमें--

बड़ी लाइट लगी हुई है यह नाइट के समय का फोटो है।

क्रेन सर्विस गाड़ी का है जिसका कलर रेड व व्हाइट है।